इनमें से कुछ पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

सड़क दिखाई दे रही है जिस पर कई सारे बड़े बड़े ट्रक्स कतार में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

डिवाइडर बनाए गए हैं जिसे पीले एवं काले रंग से रंगा गया है।

एक एक खंबे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

खिड़कियों पर डिजाइन दार परदे लगे हुए हैं।

मोटे मोटे पिलर्स भी नजर आ रहे हैं।

की ओर एक बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां कई सारे बड़े-बड़े आकार के पेड़ --

बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लाल कलर के अक्षर से शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद उद्यान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

असमान में सफेद बादल छाए हुए हैं।

खाली सड़क भी है जिसके बीच में डिवाइडर बनी हुई है।

कई सारी महिलाएं नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है।

धूप और बारिश से बचने के लिए नीले रंग की शेड बनाई गई है।

एक गाड़ी जिसके चीथड़े उड़े हुए हैं वह भी खड़ी दिखाई दे रही है।

एक नीले रंग का शेड बना हुआ है जिसे लोहे के मदद से सपोर्ट दिया गया है।

यह शख्स जिसने लूंगी एवं शर्ट पहन रखा है वह रिपेयर होते हुए देख रहा है।

पर कई सारे हरे हरे घास उगे हुए हैं।

के दोनों ओर जमीन पर हरी हरी घास और कई सारे अलग अलग प्रजाति वाले बड़े एवं छोटे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर एक ग्रीन कलर का बस लगा हुआ है जिसके ऊपर बिंदुपुर टाइगर रिजर्व लिखा है।

सामने की ओर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने नीले कलर की हाफ पैंट एवं लाल कलर की हाफ टी-शर्ट डाल रखी है।

तस्वीर में सामने कि ओर एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बड़ा सा लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

इसके एंट्रेंस गेट पर सीढ़ी लगी हुई है।

अंदर की ओर एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है।

यहां सामने की ओर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है।

सीलिंग पर सफेद रंग का झूमर लगा हुआ है।

कैंडल लगे हुए हैं और एक किताब रखी हुई है।

बाईं ओर एक शख्स किताब पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

प्लास्टिक के त्रिपाल से शेड बनाया हुआ है।

कुछ एकदम लाल रंग के भी नजर आ रहे हैं जो नीचे की ओर दबे हुए हैं।

विशालकाय पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

काले रंग की प्लेट द दिखाई दे रही है।

ढेर सारे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।